इस पिक्चर मे हम देख सकते हैं हमें यहाँ इमारत सी बनी नजर आ रही है जहां पर छोटी-छोटी विंडोस वगैरा बनी है नीचे की तरफ हम देखें तो वहां पर कुछ बोर्र्ड वोड्स से लगे हुए है ऑरेंज कलर के।

नीचे हमें कुछ दुकाने और सीढ़ियां नजर आ रही है सड़क पे बाइक खड़ी हुई भी हमें दिख रही है जमीन ऊंची नीची सी है वहां --